ये जगह दिखने मे एक बागीचा जैसा है हरा भरा और बाग़ीचे को बहुत ही अच्छी तरह से मैन्टैन कर रखा है।

दिखनें में यह जगह शोरूम जैसी लग रही है लेडिज शोरूम जहाँ पे काफी सारे लेडीज कॉस्ट्यूम्स रखे हैं और एक दो मैनीक़्वीनस भी है।

सारे रास्ते को फूलों से सजाया गया है और काफी अच्छे से सजाया गया है।

पिक्चर में एक म्यूजिक हाउस दिख रहा है इस पिक्चर में काफी सारे गिटर्स है ड्रम सेट्स है यूकेलेले है काफी ढेर सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हैं।